यह एक छठ पूजा का दृश्य है और यहां पस बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं।

इसमें सीमेंट का भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है।

दीवाल में टाइल्स लगे हुए हैं।

मंदिर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

चौकी में चादर और गद्दे बिछाए हुए हैं और उसके ऊपर तीन तकिए भी रखे हुए हैं।

बहुत सारे टोकरी में भी सजाकर रखे हुए हैं।

इसके दिवाल मे व्हाइट कलर का व्हाइट पुट्टी यूज किया गया है।

एक चर्च का दृश्य है और यहां पास बूढ़े जेन्स महिलाएं बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

रोड के बाहर एक पिकप भी दिखाई दे रहे है और रोड में बाइक भी चल रहे हैं।

यह एक नदी का दृश्य है यहां पास बहुत सारे महिला और जेंट्स आए हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है शीशे का मदद से काउंटर बनाया हुआ है।

एक टेंपो है जो रोड पर खड़ी है जो रेड और ब्लैक कलर का है।

दीवाल में लाइट का यूज किया गया है।

गेट में लोहे का एंगल और ब्राउन कलर का पेंट किया गया है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जिसका कलर रेड और येलो कलर से किया गया है उसके घर के ऊपर एक लाइट भी लगा हुआ है।

बीच में बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं।

एक बैंक का दृश्य है और यहां पास महिला और जेंट्स आपस में बात कर रहे हैं।

लोहे का एंगल के मदत से और ऊपर करकट भी यूज किए गए हैं।

यहां से बहुत बड़े बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

ब्लू कलर का काउंटर भी बैठने के लिए लगाए हुए हैं।

यह एक मंदिर का दृश्य है और यहां पास एक टेंपो भी रोड के पास खड़े हैं और यहां पास एक आदमी ओटा में बैठा हुआ है।

यह एक मन्दिर का दृश्य है जो एक रेड कलर का और पर्पल कलर का झंडे लगे हुए हैं।

ऊपर एक लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है और इसके चारो ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यहां पास बहुत सारे व्यक्ति लोग आए हुए हैं।

घर का कलर व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है यहां पास बहुत सारे अनेक तरह के गमले भी रखे हुए हैं।